पीछे के जो कपड़े है वो हरे रंग का है।

फ्रिज है जिसके ऊपर बॉटल रखी है और कोल्ड-ड्रिंक्स भी लगी है ।

पीछे में बहोत सारे लोग भी है।

क्लास के आप देख सकते हैं बहोत सारे --

और कुर्सी भी हे और पीछे में एक डब्बा भी रक --

और पीछे में देखे तो टिप्पे हैं जिसमे --

में एक दुकान का नाम है चिल्ड्रेन बुक --

आप देखे तो बोहोत सारे बसेस है।

हैड टू फिट और आगे में बहोत बड़े काँच लगे हुए हैं।

ये जो तस्वीर है आप देख --

कुछ लोग खाना खा रहे हैं और भी बहोत सारी चीज़े है।

अन्दर बहोत सारी लाइट है आगे देखे तो बहोत सारे --

बगल में आप देखे तो जेली का --

है नापतोल की मशीन है।

की है जहाँ पे उजले और हरे कलर की बस है ।

हैं की एक मकान की जो बन रहा है।

आप देख सकते हैं पीछे में बोहोत सारे पेड़ हैं।

में लिखा हुआ है वी कैन केयर योर फैब्रिक ।

ये जो तस्वीर है यहाँ पे बहोत सारे मकान हैं आप देख --

ये जो तस्वीर है किताब --

इ जीन्स सब पेहनी हुई है।

कान है जिसका नाम है विजय --

और भी बोहोत सारी चीज़े दिखाई दे रही है।

ये रेलवे स्टेशन की है जिसका नाम गुरुल है।

जिसमें लिखा है नोबडी सेल्स चीपर एंड बेटर ।